यहां दो मूर्ति रखे हुए हैं ये मूर्ति राधा कृष्ण के मूर्ति है यहां लोग पूजा करने आते हैं।

यहाँ लोग मलारपन के लिए आते हैं।

मैसनरी सामान बनते भी हैं यह बहुत अच्छा कारखाना है यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं ।